ये एक माताजी का मंदिर है ऊपर मां लिखा हुआ है लाल अक्षरों में मां के साइड में त्रिशूल बना हुआ है पीले कलर की दीवारें हैं आगे माता जी का एक तस्वीर बना हुआ --

मंदिर के साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें ग्रील लगी जाली लगी हुई है कांच की खिड़कियां हैं।

ये छत रिपेयरिंग का काम चल रहा है व्हाइट कलर की छत है जिसकी पुट्टी टूटू गई है छैनी और हथौड़े के हिसाब से उसे खोदा जा रहा है।

दो दो मजदूर काम कर रहे हैं इन्होंने ऑरेंज कलर का सेफ्टी जैकेट पहन रखा है येलो कलर का सेफ्टी हेलमेट पहन रखा है उसके नीचे वाइट पट्टी है।

साइड पीछे जंगल है जंगल के साइड में एक स्कूटी खड़ी है रोड के ऊपर सीमेंटेड रोड है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की सियाज और वाइट कलर की वरना खड़ी है अंदर एक गाड़ी का वर्कशॉप का काम चल रहा है।

यह एक बी_एस_एन_एल ऑफिस है इस पर चार ए_सी लगे हुए हैं ऑफिस बड़ा पुराना बिल्डिंग है।

पीछे साइड में एक गमला रखा हुआ जिसमें येलो पत्तियां और पीले फूल हैं।

ये एक मैरिज हॉल है जिसका नाम पांचाल बुद्ध विहार है ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर बोर्ड के साइड में एक लाइट है नीला आसमान है।

व्हाइट कलर की बिल्डिंग है गोल्डन कलर की पट्टी है बिल्डिंग के चारों तरफ अ लाइटिंग की हुई है।

सामने ये ग्रिल लगे हुए हैं। ग्रिल में ये सिल्वर कलर और गोल्डन कलर किया हुवा है। ब्लॅक कलर की ग्रिल हैं। आगे लोग वहां खड़े हैं। नीले ग्रीन कलर की मैटिंग बिछा रखीं हैं।

दो लोग बैठके बातें कर रहे हैं टेबल कुर्सी के ऊपर बैठके ये कुर्सी पे येलो कलर का कवर लगा रखा है टेबल पे वाइट कलर का कवर रखा है साइड में पिंक एक बिल्डिंग है।

बहोत ही गंदा पानी है पानी के अंदर पत्ते पड़े हुए हैं ब्राउन कलर के।

इसमें रानी कलर की साड़ी पहेन रखी है एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ब्राउन शर्ट और वाइट पैन्ट पहेन रखी साइड में एक बुजुर्ग जो चश्मा पहेने हुए हैं।

ये एक शादी का इवेंट है इस मैरिज हॉल है पिंक पिंक कलर की दो बैठने के लिए बनाए हुए हैं साइड में लाइन से सोफे हैं जिन पे लोग बैठे हुए हैं।

एक व्यक्ति ने अपने जूते खोल रखे हैं ब्लैक कलर के जूते हैं व्हाइट शॉल है बाहर मण्डप लगा हुआ है।

जिम का जिम के ओपनिंग का फोटो है जहां पे छत छत पे छत जिम के ऊपर भी पी_ओ_पी है उसमें लाइटें लगी हुई है।

ये जिम का फोटो है जिम के अंदर पी_ओ_पी का काम किया हुआ है दो लाइटें जल रही है दो पंखे हैं ए_सी लगा हुआ है।

ब्लैक कलर की कारपेट बिछा रखी है वाइट कलर के टाइल्स लगा रखी हैं दीवारों पे सिल्वर कलर और व्हाइट अह येलो कलर की पट्टियां मार रखी है।

लटकने के लिए स्टैंड लगा रखे हैं फोटो लगा रखी है जहां पे लड़कियां वेट उठा रही हैं।

दो डुगडुग है टमटम है।

खिड़की है जिसमें छोटे छोटे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं एक माएस्ट्रो खड़ी है सिल्वर कलर की एक बाइक खड़ी है ब्लैक एंड सिल्वर कलर की उसके पीछे स्प्लेंडर खड़ी है आगे एक पैशन खड़ी है ब्लू कलर --

और ऊपर व्हाइट कलर की दीवारें हैं नीचे ब्लैक पट्टी है फिर उसके टाइल्स लगी हुई है ब्राउन कलर का आगे दीवार है पंखे लगे हुए हैं लाइट जल रही है दो पंखे हैं।

बैठक फास्टफूड का बोर्ड है जिसमें प्योर वेज का लोगो है प्योर वेज लिखा हुआ है प्रतिक पटेल ओनर है उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है।

और ब्लैक दीवारे हैं लाइटे हैं पंखे हैं ए_सी लगे हुए हैं तीन तीन ब्लैक परदा है।

तीन लाइन से खिड़की तीन लाइन में खिड़कियां दो माले का हॉल है साइड में खिड़की है साइड में दरवाजा है सीढ़ियां बनी हुई --

काले काले बादल हैं सामने एक पहाड़ी है बैठ के कुछ सोच रहा है सामने एक और पहाड़ी है एक पहाड़ी थोड़ी काली सी लग रही है एक पहाड़ी थोड़ी ग्रीन और ब्राउन कलर की दिख --

खिड़की भी है उसमें से धूप निकल रही है और पीले क्रीम कलर का कलर किया हुआ है बहुत बढ़िया जिम है।

कुछ सूखे पत्ते भी हैं पेड़ पे लगे हुए हैं एक गाय है नीला आसमान हैं।

फोटो में करियर लगी हुई है होंडा एक्टिवा खड़ी है उसके आगे स्कूटी है फिर बाइक है फिर एक स्कूटी है।

लकड़ी के फर्नीचर है बेंच लगी हुई है।

कलर कौन सा है ऊपर ग्रे कलर है।